ये पार्क है दो चेयर्स हैं तीन चार घर है और बहुत सारे पेड़ हैं आसमान --

एक लड़की है जो स्टेज पे डांस कर रही है पीछे बोल्ट लगे हैं।

एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें ऊपर आका साबित भोपाल लिखा है।

एक मेडिकल क्लिनिक है जिसमें छे बेड है।

और ये रेस्ट करने के लिए छः बेड दिए गए हैं एक दो कुर्शी रखी हैं।